यह मंदिर है और काफी अच्छा लग रहा है गणेश भगवान है यहां बहुत --

और गाछी भी है और ऊपर घर भी लग रहा है निचा--